तस्वीर में हमें सैलून के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर रेस्टोरेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

ऑफिस के अंदर बहुत सारे टेबल कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

इमारत के ऊपर गौर ट्रेडर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक डेंटिस्ट क्लिनिक के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक फर्नीचर की दुकान का अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक तरफ बहुत सुंदर इमारते बनी हुई दिखाई दे रही है जिनके बीच में एक चौक बना है।

इस तस्वीर में हमें एक झरना दिखाई दे रहा है जो देखने में काफी सुंदर--

ऊपर की तरफ बहोत सारे पेड़ लगे हुए भी दिखाई दे रहे--